दिखाई दे रही है दिखाई दे रही है और यहाँ पे दो पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पे काँच लगी हुई दिखाई दे रही है लाईट लगी दिखाई दे रही--